यहां पे किसी का कंपटीशन वंपटीशन हो रहा है स्कूल के बच्चों का यह अपने प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं।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

हरे हरे पेड़ पौधे बाइक स्कूटी वगैरह सारी चीजे दिखाई दे रही हैं।

और डॉक्टर चेयर पे बैठा हुआ है पेय स्काई ब्लू शर्ट टी शर्ट में।

इसी पे का घर बनाये का काम चल रहा है येह शायद रोड पे ही जगह ली गई हुई है यहां पे सूखी सूखी घास उगी हुई है।

कोई कपड़े की दुकान लग रही है जिसमें यह स्टैचू खड़ा है।

रेंट की वायर जा रही है और एक ब्लू एंड व्हाइट कलर की ऊपर से छत बना जैसी बना रखी है जिसके अन जिसके नीचे लोग खड़े हुए हैं।